एक टावर दिखाई दे रहा है कुछ दूर पे एक पेड़ दिखाई दे रहा है कुछ दुर दूर पे एक घर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर कुछ लकड़ियां पड़ी हैं।

यहाँ पे घास दिखाई दे रही है मतलब गन्ना दिखाई दे रहा है। इ कुछ दूर पे खम्भा दिखाई दे रहा है। खम्भे से तार भी दिखाई दे रहा है। कुछ दूर पे टावर दिखाई दे रहा है कुछ दूर पेड़ है इधर इ पेड़ भी दिख --

दिखाई दे रहा है। वहाँ पे एक मूर्ति भी दिखाई --

ये एक फिल्ड दिख रही है उसपे लिखा गाँव उ वहाँ पे एक बेंच पड़ी है।

ख़म खजुरी का के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ए ये घास भी दिखाई दे रही है और थोड़ा टेप पंडाल लगी नीली कलर की और वाइट कलर की वो भी दिखाई दे रही है।

पेड़ भी दिखाई दे रहा है। खंभा भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक अ मंडप ऐसा लग रहा है शादी का |